यहाँ पर कुछ बसे खड़ी हुई दिखाई दे रही है अ सामने की तरफ रोड दिखाई दे रहा है मैदान मे कीचड़ भी दिखाई दे रहा है अ एक खंबा दिखाई दे रहा है बस का कलर हरा है।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

ट्रेनें नजर आ रही है। सामने।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

ठी के तरफ पेड़ भी नजर आ रहे है रोड के आर पार कुछ अ मैदान मे पत्थर और घास भी नजर आ रही है अ यह चित्र अच्छा देखने मे लग रहा--